इसमें बड़ी बड़ी फूलों की सफेद और लाल फूलों की माला दिखाई दे रही है यहां --

यहां एक लड़का जिसका फेस है बलर किया गया है यहां लड़के की टी शर्ट ब्लू है।

जिसके बाहर एक बड़ा मैदान है इसमें एक नेट लगी हुई है यहां पर लाइट के बड़े बड़े खंबे हैं।

उसके पीछे एक नीला आसमान है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा है।

यह एक बुक शॉप है साथ में एक होटल है डी मार्ट लगा हुआ है।

जिसमें कुछ नमकीन हैं एक सामने लैपटॉप रखा हुआ है सामने एक ए_सी लगी हुई है।

यहां एक नीला आसमान है जिसके पास--

ऊपर लोहे की ग्रिल लगी है बाहर कुछ सामान है एक लोहे --

लड़कियों का चेहरा ब्लर है इनके पीछे बड़े बड़े पर्दे लगे हैं।

यहां कंप्यूटर मिलते हैं यहां चार पेड़ियां हैं यहां दो बाइक खड़ी है।

यहां पर राखियां मिलती है यहां पर बड़े बड़े आदमी खड़े हैं।

बैग पर प्रेम जी लिखा है यहां एक बर्तन है एक गेट है।

यहां पर सब्जियां पड़ी है यहां पर केले पड़े हैं यहां पर सेव पड़े हैं।

यहाँ बिजली के तार हैं एक गाड़ी आ रही है लाइने बनी हैं।